इस तस्वीर में बहुत सारा शेल्व्स रखा हुआ है और शेल्व्स में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

इस मे सॉस मैगी तेल कॉफी सेरेलेक्स हार्पिक और बहुत सारा कॉस्मेटिक समान रखा हुआ है।

दो मनुष्य है। एक मर्द खड़ा हुआ है और एक औरत बैठा हुआ है।

अभी बहुत सारा मनुष्य है।

जैसे एस_एस टोन एडिडास का--

और सफेद रंग का गाड़ी भी रखे हुए हैं।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारा काले रंग का टायर दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बंद वाला दुकान दिख रहा है ऊपर में ट्रेड्स लिखा हुआ है।

टिन्ना से बनाया हुआ है और लोहा से और बहुत सारा लोहा का टुकड़ा भी रखा--

दीवार में स्विच लगाया गया है और बगल मे डस्टबिन भी है।

पीछे में बहुत सारा बेसिन का प्लेट भी रखा हुआ है।

टोकरी थाली और बर्तन भी रखा हुआ है।

बड़े बड़े पेड़ पौधा और आसमान है।

और बहुत सारे मनुष्य इकट्ठे होके हैं।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

नीले रंग का टेबल है और दो काला चेयर है।